इस क्षेत्र मै चार लोग दिखाई दे रहे है जोकि दो लोग दुकान के अंदर है दुकान के बाहर की तरफ दरवाजे पर कुछ फूलो से बनी माला लगी हुइ दिख रही है तथा कुछ गुब्बारे दिख रहे है।

इस चित्र में किसी जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है जहां पर दो व्यक्ति खड़े दिख रहे है| एक व्यक्ति ने लाल रंग कि शर्ट और काला लोअर पहने हुए बैग टांग रखा--

यह चित्र किसी मार्शल आर्ट स्कूल का चित्र है जहाँ छोटे बचे को ट्रेनिंग दी जा रही है।

इस छेत्र में एक समुद्र दिखाई दे रहा है जहा पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है जो कि समुद्र में नहाते हुए की तरफ कुछ नाव भी दिखाई दे रही है।

ऊपर कि तरफ एक नीले रंग का बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमे बड़े अक्षरों में हिंदी तथा अंग्रेजी में एच.डी.एफ.सी. बैंक लिखा हुआ दिख रहा है कुछ लोग इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं।

उसने काले जूते पहन रखे हैं उसके हाथ में एक पेपर लगा हुआ है और वह सरियाओं के बीच में खड़ा दिख रहा है पीछे कि तरफ कुछ लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसा लगता है जैसे वह मजदूर हैं।